वर्कर काम कर रहे हैं सीमेंट से साइड में एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है थोड़ी दूरी पर एक टीन शेड दिखाई दे रहा है लोहे की छड़े दिखाई दे रही हैं।

यहां पे लड़कियां दिखाई दे रही हैं। थोड़ी दूरी पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दो बड़े-बड़े खंभे दिखाई दे रहे हैं।

हाँ पेट्रोल पम्प से ही कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दे रही है| पेट्रोल पम्प के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह ब्रिज चारों तरफ से पैक दिखाई दे रहा है ऊपर से लाइनिंग दिखाई दे रही है।

इसके नीचे कुछ अ चट्टानो जैसी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर बादल दिखाई दे रहा है।

मुझे एक पुल दिखाई दे रहा है। पल के नीचे बहुत सारी हरी-हरी घांस दिखाई दे रही है।